इस चित्र मे एक गाय खड़ी हुई दिख रही है जो की चारा खाते हुए दिखाई दे रही है यह गाय काले कलर की है इसमे सफ़ेद और लाल रस्सी बंदी हुई है।

इस चित्र मे एक हिरण खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक दीवार भी दिख रही है।

इस चित्र मे एक बिल्डिंग बनती हुई दिख रही है जिसमे नीले काँच लगे हुए है नीचे कुछ दुकाने भी बन रही है।

इस चित्र मे एक तालाब दिख रहा है तालाब मे आस पास पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।